इसमें वो लगे हुए है दो लड़के उन्होंने बैग टांग रखा है वो उधर जा रहे है नीचे टाइल्स लगी है घास लगी है।

बहुत बड़े पेड़ लगे हुए है सामने घाटी जैसा बना हुआ है।

सामने घाटी जैसा बना हुआ है बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है।

साइड में बहुत बड़ा पेड़ लगा है ऊपर बहुत बड़ा झंडा जैसा बना हुआ है तम्बू निचे जे एक गैलरी बनी हुई है।

पेट्रोल पंप की मशीन लगी है एक खम्बे लगे है।

बहुत सारे लोग बैठे हुए है उन्होंने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है बहुत --

ऊपर छत में बहुत सारे लाइट लगी हुई है वाइट कलर की छत पुती हुई है ये सामने एक बोर्ड लगा है सामने एक पंखा लगा हुआ है।

एक वाइट कलर की बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसमे बहुत सारे बोर्डओ लगे हुए हैं।

यह एक बिल्डिंग बनी है यह वाइट और ब्लू कलर की पुट्टी हुई है।

सामने दो तीन लोग खड़े हुए है यह एक बिल्डिंग जैसी बनी है सामने--

एक फर्शी जैसी बनी है उसमे बहोत सारे पौधे लगे हुए है एक सामने बैनर लगा है।

गाइस बहुत सारे रेड कलर की कुर्सियां रखी हुई है इसपे लोगन बैठे हुए है एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है।

घाँस रखी हुई लगी हुई है नीचे बहुत सारी ईंट रखी हुई है पेड़-पौधे लगे है बहुत सारे--